यह भी एक मैकेनिक की शॉप दिखाई दे रही है दुकान के अंदर ऊपर एक सीलिंग फेन लगाया है दुकान पिंक कलर का है।